दीवार का कलर ग्रीन है गुब्बारे का कलर सफेद गुलाबी और जामनी हैं।

फर्श का कलर काला है कुर्सी का भूरा है सामने का कलर भूरा है सामने एक पर्दा है इसका कलर नीला --

और सामने कार्टून पड़े उनका का कलर भूरा है बिल्डिंग का कलर सलेटी है खंभे का कलर सलेटी है और सामने एक वायर है रस्सी है जि सका कलर सफेद है।

गिटार का कलर पीला है व्यक्तियों के सर के ऊपर मटके पड़े हैं उसका कलर हरा नीला लाल --

नारियल का कलर हरा है कैरी का कलर काला है सामने बोट लगा हुआ जिसका कलर हरा और काला है।

सामने घी का कंटेनर भरा है जिसका कलर नीला है और सामने दीवार है दीवार का कलर सफेद है।

ब्राउन में स्ट्रॉबेरी का कलर लाल पौधों का कलर हरा है खिड़की का कलर काला है।

एक व्यक्ति खड़ा है जी कपड़ों का कलर सफेद जैकेट का कलर स्लेटी एक महिला है जी के जैकेट का कलर काला है बैग का कलर ब्राउन --

सामने एक दरवाजा जिसका कलर ब्राउन है पर्दे का कलर हरा है और सामने एक मोटरसाइकिल है जिसका कलर ब्लैक है।

और पास में एक मिट्टी के सीमेंट का बना हुआ जिसका कलर सलेटी है बाल्टी का कलर सलेटी है।

दीवार का कलर पीला है कूलर का कलर नीला है उसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा है जिसका कलर हल्का ग्रीन है बल्ब का कलर सफेद है।

कपड़े पहने उसका कलर ब्राउन है माइक का कलर काला है माला कलर हरा गुलाबी पीला है।

कालीन के पास एक और कालीन बिछा हुआ है जिसका कलर हरा है फर्श का कलर हल्का पीला और मैंहरून है गुब्बारों का कलर --

लोटे का कलश लेती है बॉक्स का कलर ऑरेंज और काला है।

पर्दे का कलर हरा व्यक्ति खड़ा कपड़ों के कलर सफेद और पिंक पेड़ का कलर हरा बैनर का कलर न ऑरेंज कुर्सी का कलर लाल --

ओ व्यक्ति बैठा है कपड़ों का कलर सफेद और भूरा--

एक बिल्डिंग है जिसका कलर पीला और सफेद है व्यक्ति खड़े इस कपड़ों का कलर सफेद और काला एक व्यक्ति कपड़ों कलर लाल है।

व्यक्ति कपड़ा का कलर सफेद और नीला है फर्श का कलर मैरून और सफेद है कुर्सियों का कलर कलर ब्राउन है।

का कलर सफ़ेद है एक व्यक्ति खड़ा है उसके कपड़ों का कलर नीला है दरवाजे का कलर सफेद --

और ड्रम का कलर ब्राउन है एक बोतल पड़ी है जिसका कलर लाल और सफेद तकिए का कलर कला और ब्राउन त --